इस तस्वीर में कुछ आदमी दिखाई दे रहे है और एक पंखा दिख रहा है लाइट दिख रही है लाइट ऑन दिख रही है और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और अपने बालों को कटवा रहा है।

इस तस्वीर मे बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग मे शटर दिखाई दे रही है और एक बोर्ड लगा हुआ है।